जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्थडे का से अ डेकोरेशन की गई है जहाँ पर बलून से बोहोत सुंदर हार्ट बनाया गया है।

यहाँ पर आप लोग देख सकते है ये एक जनरल स्टोर है जहाँ पे ये एक बहुत बड़ी कप्बर्ड में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं।

इसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और इसके अंदर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ये आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ चर्च के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं और जो प्रेयर्स कर रहे हैं और नीचे सीढ़ियों पर भी कुछ --

और इनके सामने नाश्ता भी रखा हुआ है और यहां पर टेबल पर एक टिशू पेपर रखा हुआ है। इस कैंटीन का कलर ऑरेंज है और यहां पर काउंटर भी बना हुआ है।

जैसा कि आप देख सकतें हैं। स्टेज पर दूल्हा - दुल्हन खड़े हुएँ हैं। दुल्हन रेड कलर का लहंगा और दूल्हा गोल्डन ऐंड मैरून कलर की शेरवानी पहने हुए है।